का काम चल रहा है जहाँ पे फिरोजी कलर के कुछ पाइपलाइन वागेरा दिख रही हैं कुछ खंबे दिख रहे हैं और एक इंजीनियर है जो कि कुछ चीज सुधार रहा है।

उसके साइट में कुछ औजार रखे हैं टूल्स । इसके अलावा एक व्हाइट कलर की कार भी खड़ी है साइड में और फैन लगा हुआ है।

बिल्डिंग का फोटो है जिसमे कुछ प्यारी सी खिड़किया दिख रही है और बिल्डिंग का जो कलर दिख रहा है वो व्हाइट दिख रहा हैथोड़ा सा ग्रे कलर है वहां पे कुछ साइड में वायर्स दिख रहे है तीन से चार वायर दिख रहे है।

एक बोहोत प्यारा रूम है जहाँ पर कुछ कला आकृतियाँ बनायीं गयीं हैं जिसमें कि एक मछली बनाई गयी --

जिसमें तीन लोग जो है वो बैट बॉल खेल रहें हैं मतलब गेंद बल्ला खेल रहे है और एक फिरोज़ी कलर की--